इसके पीछे एक पोए पेड़ है।

और ऊपर साइड एक पट्टी है जो की संतरे कलर की है ।

अंदर से बहुत ही अच्छा सुंदर डेकोरेशन है रंग-बिरंगे तरीक़े से डेकोरेट किया गया है।

इस पिक्चर में हम एक फ़ुब्बारे को देख सकते हैं।

इसके अलावा इसके बाहर बहुत सारी मोमबत्तियाँ जली हुई हैं और दिये भी जले हुए हैं जो की सुंदर दिख रहे हैं।